यहां पर हमें दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें बहोत बड़ी एक शॉप दिख रही है।

साथ में कुछ डेकोरेशन की गई है।

एक टेबल ब्लैक कलर का दिखाई दे रा--

साथ में रेड कलर के बहोत सारे गमले हैं।

साथ मे यहां एक सलून दिखाई दे रहा है।

वाइट कलर की कार दिखाई दे रही है।

कुछ यहां पर हमें आम भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें ग्रीन कलर के पत्ते दिख रहे है।

जो कि पीछे जंगल एरिया दिख रहा है बहोत बड़ा।

सामने ही पहाड़ दिखाई दे रहे है।

पत्थर की दीवार दिखाई दे रही है।